हॉल है जिसमें बहोत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

और दूर में एक पहाड़ है

आदमी ने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

सफेद और भूरे रंग का है और एक गाड़ी खड़ी है।

जिसका रंग सफेद रंग का है

सामने एक दीवाल है जिसमें--

सामने एक दीवार है जिसमें जिसको सफेद रंग से रंगा गया हैं और एक--

छतरी लगी है जो की सफेद रंग की है।

सामने एक पेट्रोल पंप है जिसका रंग नीला और सफेद रंग का है।

जिसका रंग सफेद रंग का है और एक आदमी है जोकि नीले रंग के कपड़े पहने हुआ है।

और एक आदमी हैं जिन्होंने नीले रंग के--

और दो गाड़ियाँ है जिनमें से एक गाड़ी का रंग लाल रंग का हैं।